क्लासरूम में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं।

सड़क के पास सफेद बिल्डिंग दिख रही है।

इनके पास एक मेज रखी हुई है।

प्लेटफारम पे बोर्ड लगा हुआ है उस पर लखनऊ लिखा हुआ है।

ये एयरफोर्ट मेट्रो स्टेशन है।

उसके जाल के आसपास बहोत बड़े बड़े पेड़ हैं।

यह जीना लगा हुआ है।

यह एक सेल की दुकान है।

एक आदमी काला भूसट पहने खड़ा है।

यह एक प्राकरतिक चित्र है।

और चार ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं।

और अनेक गाड़ियां बाहर खड़ी हैं।

शोरूम में एक सफेद कार खड़ी है।

अगल बगल सब गमले रखे हुए हैं।

और सफेद रंग की रैलिंग दिख रही है।

इमारत है इमारत पे प्राचीन साड़ी सेंटर लिखा हुआ है।

और आसपास सब गाड़ी खड़ी हैं।

और दुकान के आसपास बिस्कुट चॉकलेट दो टंकी और पीले रंग की बोरियों में कुछ रखा हुआ है।

मकान के बाहर एक पार्क बना हुआ है।